सामने की तरफ टेबल पर बहोत सारी मछलियां पड़ी हुई हैं कुछ मछलियां बड़ी है कुछ छोटी हैं।

और कुछ डब्बे भी रखे हैं उनके ऊपर कुछ फोटो छपी हुई है ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है ।

कुछ लिखा हुआ है हरे रंग से बाहर की तरफ एक डस्टबिन रखा हुआ है हरे रंग का एक बाइक खड़ी है कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए हैं पीछे की तरफ एक--

सामने की तरफ हरे हरे पेड़ नजर आ रहे हैं और कुछ पेड़ों में कुछ फूल भी नजर आ रहे है नीचे--

मुडे रखे हुए हैं उसके ऊपर कुछ बच्चे बैठे हैं इन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए है एक लड़की खड़ी हुई है इसके हाथ में कुछ--

यह एक स्कूल है यहाँ बाहर की तरफ एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है सफेद रंग से उसके ऊपर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थकान ।

कुछ लोग नंगे हैं कुछ लोग खड़े हैं एक व्यक्ति के पास बाल्टी भी है एक हरे रंग का डब्बा सा--

रखा हुआ है सामने लोहे के गेट पर तोलिया टंगा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है पानी के अंदर हाथी खड़ा हुआ है हाथी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है उसने रस्सी लटकाई हुई है पानी में।

यहाँ पर खाली जगह है लकड़ियों के कुछ गट्ठर रखे हुए हैं कुछ हरे पेड़ नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ आगे कुछ हरी-हरी घास कुछ मिट्टी--

कुछ छोटे जंगली पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ छोटी लकड़ियाँ भी हैं।

बिल्डिंग है उसके आस-पास में खाली जगह पड़ी हुई है सारी।

बड़ा गेट भी है एक वॉचमेन में बैठा है नीले रंग के कपड़ों में कुर्सी के ऊपर उसके हाथ में अखबार है।

लगे हुए हैं नीचे की तरफ बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं रंग-बिरंगे--

रखा हुआ है कुछ घास भी है एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

डमरू भी रखे हुए हैं कुछ चम्मच है।

लिखा हुआ हैनीचे की तरफ हैंगर में साड़ियाँशॉल शर्ट्स टंगे हुए हैंएक पीले रंग की साड़ी है।

सामने की तरफ सफेद और लाल रंग की फोर -व्हीलर गाड़ी खड़ी है एक हरे रंग के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

लिखा हुआ है एक टेबल रखी है उसके ऊपर चादर बिछी है।

लगे हुए हैं फूलों से सजाया गया है नीचे की तरफ हरी घास है।

यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति हैं यह आसन कर रहे हैं नीचे इन्होंने चटाई बिछा रखी है रंग-बिरंगी।

लगे हुए हैं इनका एक पैर पीछे की तरफ है और एक पैर आगे की तरफ है।

सामने की तरफ एक बहुत बड़ा गेट है लोहे का उसके बाहर बैनर लगा हुआ है बैनर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ।

ओम बना हुआ हैदोनों पिलर के ऊपर सातिया भी बने हुए हैं।

रखे हुए हैं उनके अंदर हैंडल भी लगे हुए हैं एक गोड्रेज की--

यह वाटर पार्क है यहाँ पर बीच में बहुत सारा पानी भरा हुआ है एक झूला लगा हुआ है स्लाइडिंग का।

सामने की तरफ एक कुर्सी रखी हुई है छत में पंखा लगा हुआ है काले और पीले रंग के बैलून --

लटके हुए हैं कुछ शीशे के दरवाज़े हैं एक कुर्सी इधर की तरफ रखी है काउंटर बना हुआ है एक पीले और नीले रंग का म्यूजिक भी रखा हुआ है पानी वाला।

लिखा हुआ हैदो कुर्सियाँ रखी हुई हैं हरे रंग की और एक साइकिल भी नजर आ रही है।

फ्लश रखी हुई है सैंपल के लिए कुछ सफेद हैं कुछ दूसरे कलर की हैं कुछ ब्लैक कलर की हैं पीछे की तरफ भी कुछ वाश -वेशंस रखे हुए हैं।

यहाँ चारों तरफ मिट्टी-मिट्टी और घास ही घास है पीछे की तरफ हरे-हरे पेड़ भी नजर आ रहे हैं कुछ सामान भी--

पड़ा हुआ है कुछ नीले रंग की जाली सी दिखाई दे रही है एक छप्पड़ का घर भी बना हुआ है इसके अंदर भी कुछ है।

साड़ी पहन रखी है दीवार पर एक गोल-गोल सा भी कुछ लगा हुआ है दो लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहाँ दीवार पर एक स्क्रीन लगी हुई है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है रेड रंग की--

पेन रखा है नीचे की तरफ कुछ स्टूल भी रखे हुए हैं और कुछ गुलाबी रंग का कारपेट बिछा हुआ है।

एक लोहे का बोर्ड दिख रहा है कुछ हरी-हरी घास और पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

पेड़ है नीचे की तरफ कुछ मिट्टी कुछ घासी भी नजर आ रही है कुछ और भी छोटे बड़े पौधे हैं।

पेड़ है और एक स्कूटी भी खड़ी हुई है एक व्यक्ति बैठा हुआ है इसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी है सफेद रंग की दो कैन रखी हैं।

लगी हुई है काउंटर बना हुआ है दीवार में एक टी_वी भी लगा हुआ है।

यहां पर चारों तरफ हरी हरी घास हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं कुछ लड़कियों के गट्ठे भी दिख रहे हैं पीछे की तरफ कुछ आगे की तरफ।

एक खंभा भी है लोहे का कुछ मिट्टी सी भी यहाँ पर--

रखा हुआ है और साइड में भी कुछ रखा हुआ है इस साइड में भी कुछ पर्दे से लगे हुए हैं दीवार पर कुछ चिपका हुआ है।

सामने की तरफ एक टेबल लगी हुई है टेबल के ऊपर बहुत सारी बास्केट्स रखी हैं बास्केट्स --